पानी गर्म करने वाला एक बर्तन है।

यहां पे बहुत सारे झंडे गड़े हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे अलग अलग कारे रखे हुए है और यहां पर बहोत सारे लाइट जल रहे हैं।

दीवाल का कलर सफेद है।

यहां पे एक व्यक्ति सफेद कलर का टी शर्ट पहन के खड़ा है।

दीवाल का कलर पीला है अलग-अलग जिम है टाइल्स का रंग काला और पिंक है।

एक यहां पे कूलर है यहां पे कुर्सी है।

एक छोटा सा पौधा भी लगाया हुआ है।

सी_सी टी_वी फुटेज लगाया हुआ है कोन पर दीवाल का कलर सफेद है।

गेट में स्वागतम लिखा हुआ है।

एक कुर्सी है कुर्सी पे बेग रखा हुआ है।

कुर्सी है और एक बहुत बड़ा चौकी है उसमें परदा लगाया हुआ पीला रंग का दो तकिया है ब्लू रंग का।

यहां पे बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं।